बीच में नारंगी रंग है और उसके इधर उधर हरे रंग--

दृश्य है यहां दवाइयों की तथा--

बहुत सारी फोन लैपटॉपस की दुकानें आसपास हैं।